काली गाय है बहुत सुंदर गाय होती है दूध देती है सभी लोग दूध पीते हैं बहुत अच्छा लग --

जेकेट पहने हुए है और पानी की तरफ देख रहे हैं पानी बहुत साफ है।

यहाँ पे सी.आई.एन. न नंबर लिखा हुआ है कॉरपोरेट ऑफिस लिखा हुआ है कुशवाहा --

फैक्ट्री ओ.पी.सी. प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है । शिवाजी कॉलोनी नियर एस.बी.आई. मेन ब्रांच |